ये गाड़ी है गाड़ी है।

फ्लावर भी लगे हुए हैं और पेड़ पोधे भी नजर आ रहे हैं ।

यहाँ पर हमें दिखा है मानसरोवर सेंट्रली .

चौबीस घंटा आपातकालीन सेवा उपलब्ध करके पोस्टर टांगा हुआ है और यहाँ पे --

यहाँ पे चिड़िया पानी पीने के लिए नदी के आगे बढ़ रही है।